ग्रीन कलर की पत्ती वाला पेड़ दिखाई दे रहा है।

यहां पर बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे है।

निचे एक घर बना हुआ है।

यहां बहोत सारे लोग दिखाई दे रहे--

कुछ कारें भी दिखाई दे रही है ग्रीन कलर ।

और पीछे की ओर छोटी छोटी हरे रंग की घास दिखाई दे रही हैं।

सामने हमें बहोत सारे लोग दिखाई दे रहे फूल तोड़ रहे है।

बड़े बड़े पहाड़ दिखाई दे रही है पीछे--

और पेड़ दिखाई दे रहे है हरे रंग के।

जिसमें की डांस कर रही कुछ लड़के और लड़कियां हैं।

कुछ बहोत सारी साइकले दिखाई दे रही है।

सफेद रंग के कुछ बिल्डिंग दिख रहा है।

हरे रंग का एक बॉटल दिखाई दे रहा है।

लाल कलर का हल्का छत दिख रहा है।

पीछे की ओर कुछ बैट दिख रहा है बहोत सारा सोफा जिसमें हमें--

एक दुकान दिखाई दे रहा है।

हरे रंग का येलो रंग का सोफा है।

कुछ येलो झूमर लगे हुए है।

पीछे की ओर बहोत बड़ा पुल सफेद और ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है।

जिसके ऊपर सफेद रंग का लाइट जल रहा है।

पीछे हमें एक दुकान दिख रहा है।

येलो कलर और लाल कलर के बलून दिखाई दे रहे है।